सामने की तरफ हमें चट्टानें सी नजर आ रही है| वहाँ काफी सारे लोग लोगों की भीड़ भी लगी हुई है| हम देख पा रहे हैं नीचे हमें सीढ़ियां बनी हुई दिख रही है।

इस पिक्चर मे हम देख सकते है हमे यहाँ पे चट्टाने सी दिख रही है काफी पहाड़ो की बनी हुई।

इसमें हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक डिजाइन नज़र आ रहा है जिसमें काफी सारे दीये वगेरह लगे हुए हैं।

और उसमें शटर लगे हुए हैं एक बीच में हमें गेट भी देखने को मिल रहा है जिसमें हमें एक औरत बाहर निकलती हुई दिख रही है साइड में उसके बाइक भी खड़ी है ऊपर हमें कुछ बोर्ड्स लगे हुए नजर आ रहे --

में हम देख सकते हैं यहाँ हमें एक रेड कलर की बस नजर आ रही है जिस जिसका जो फ्रन्ट है बहुत ही शानदार बढ़ियां-सा बनाया गया है।